यहां पर मुझे एक मशीन दिख रही है।

यहां पर मुझे एक पेड़ दिख रहा है।

यहां पर मुझे कुछ इसराइ लोग दिख रहे हैं और वो इताई लोग--

मुझे यहां पर कुछ झाड़ पौधे देख रहे हैं। उसके सामने एक--

रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन खड़ी हुई है।

पर एक इंसान दिख रहा है।

मुझे इधर पर एक प्रिजमा चेम्पियन पे लग--

उसके सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं।

घर में गेट कत्थे कलर का लगा हुआ हैं।